यहां पर बहोत बड़े बड़े पेड़ दिख रही है।

यहां पर काफी सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

और यहां मोर रंग बिरंगी कलर का है।